इस फोटो में काफी सारे सी_एन_जी सिलेंडर दिखाई दे रहे--

फोटो मोबाइल्स कार वर्कशॉप है।

और बोर्ड भी दिख रहा है।

यह सामने की ओर देख रहा है।

कपड़े भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

इसके पीछे एक सितारे का चिन्ह बना है।

एक व्यक्ति रेडे पर बैठा है।

यह किसी ढाबे का फोटो दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक शीशे का गेट दिख रहा है।

नीले कलर का बोर्ड लगा--

यह किसी मिस्त्री की दुकान से फोटो लिया गया है।

सामने रोड पर कुछ गाड़ी और कुछ ट्रक चलते दिख रहे हैं।

एक दराज में काफी सारी दवाइयां कुछ डब्बे रखे हैं।

कुछ मिस्त्री का सामान रखा है।

सफेद कलर की काफी सारी इमारत दिखाई दे रही है।

घोड़ों ने काफी धूल उठा रखी है।

किसी ने बुरखा पहना है।

एक महिला नीचे बैठी है।

कुर्सियों का कलर लाल है।

सामने एक व्यक्ति मंच पर भाषण दे रहा है।

यह फोटो किसी स्कूल से लिया गया है।

लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

महिला और पुरुष चल रहे हैं।

इसमें काफी सारे थान के कपड़े को रोल करके लाइनों में लगा रखा है।

यह फोटो किसी गली से लिया गया है।

यह किसी नाई की दुकान का फोटो --

के मुंह को ब्लर किया गया है।

फूलों की माला टंगी है ऐसा लगता हैं कि इसका अभी उद्घाटन हुआ हैं इसका नाम।

इमारत दिखाई दे रही हैं ऐसा लगता है कि वे कुछ फैक्ट्रियां --

ऐसा लगता है कि ये काफी ऊंचाई से लिया गया है।

और सामने कुछ सफेद कलर का एक इमारत दिख रही है।

झरने जैसा पानी बेहता दिखाई दे रहा है।

इसमें डॉक्टर संजीव सिंह भी लिखा है।

कांच का गेट लगा है। कुछ पैडियाँ हैं।

योगा करते दिखाई दे रहे है।

इन्होंने अपने सिर पर सफेद कलर का कपड़ा बांध रखा है।

बड़े बड़े पंखों की पंखड़ियां रखी है।